एक आदमी ने कान पे मोबाइल लगा रखी हैं और उसकी ऊँगली पे चाबी दिख रहा है सामने एक आदमी खड़ा दिख रहा है।

यहाँ शादी का कार्यक्रम होता हुआ दिख रहा है दूल्हा-दुल्हन बैठे हुए है पंडित उनकी गठबंधन करते हुए दिख रहे है।

पीछे जिम दिख रहा हैं जिम मे बहुत सारी मसिने रखी हुई हैं कसरत करने की ऊपर एक लाइट लगा हुआ दिख--

सामने छठ पूजा का कार्यक्रम होता हुआ दिख रहा हैं यहाँ पे कुछ लड़कियां खड़ी दिख रही हैं बगल ही कुछ बच्चे खड़े दिख रहे हैं।

कुछ बाल्टी और सामने बोहोत सारी मछलियाँ रखी हुई दिख रही है।